दो गो आदमी खड़ा है एगो आदमी कुर्सी पर बैठा --

नदी है पत्थल है उधर पहाड़ है पेड़ लगा हुआ है।